जो वाइट लग रही है और यहाँ एक डोर भी है और यहाँ पर कार का हौल्टिंग भी लगा हुआ है यहाँ पीछे की तरफ भी एक स्कूटी दिख रही है और यहाँ पर एक मैन भी है और यहाँ दिन का टाइम है और यहाँ हौल्टिंग भी है।

पर आपको पता चल रहा होगा ये एक ग्राउंड है जहाँ पर स्टंप भी रखा हुआ है और ये ग्राउंड काफी खाली दिख रहा है।

और यहाँ पर दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आरहा और यहाँ पर काफी घर भी है और यहाँ पर जो घास है वो काफी कम है और यहाँ स्टेम का कलर जो है वो येलो है और यहाँ पर दिन का टाइम है।

यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा ये एक जगह है जहां ब्रिज नीचे की तरफ पानी है। कुछ पेड़ लगे हैं। कुछ पानी की टंकियां बनी हैं। पौधे लगें हुए हैं और कुछ लोग भी नज़र आ रहे हैं।

यहाँ पर ये एक मस्जिद लग रही है और यहाँ पर एक छोटी सी घडी भी लगी है और यहाँ पर तीन दरवाजे बने हुए है या एक दरवाजे पे एक मैन भी है।

और यहाँ पूरा खाली फ़र्श पड़ा हुआ है और यहाँ दिन का टाइम है और यहाँ पर एक साइड में जगह भी बनी हुई है जहाँ पर ऊपर की तरफ सर्किल में एक बहुत बड़ा पत्थर बनाया गया है।

यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक जगह बनी है जहा पर काफी ज्यादा ये शायद एक स्टेशन है जहा पर हल्की हल्की शाम होती --

यहाँ आप देख सकते है ये एक जगह बनी है जहाँ पर काफी लाइट दिख रही है। ये एक रेस्टोरेंट लग रहा है जहाँ पर टेबल चेयर भी हैं।

वो कुछ लोग हैं और यहाँ पर काफी सन्नाटा है। बड़े बड़े पेड़ हैं और यहाँ पर दिन का ही टाइम हो रहा है।